और वहां पे कई सारे टेबल भी रखे हुए हैं बाहर के दरवाजे भी कांच के लगे हुए हैं।

अगल बगल बहुत सारे घरे भी नजर आ रहे--

और कुछ पेटीयों में भी रखे गए हैं वहां पे बच्चों के लिए चोकलेट भी रखे गए हैं।

मैं यहां देख पा रही हूं एक--

वहां पे एक पुलिस गार्ड भी आ--